चित्र में एक मिलट्री ऑफिसर नजर अा रहा है जो कि चित्र की सीधी ओर देख रहा है।

में एक खुला मैदान नजर आ रहा है जिसमें साइड में सफ़ेद रंग की दीवार नजर आ रहे है जिसके बीचों-बीच-- ।

ए एक जीम नजर आ रहा है जो की जिसमे बहोत सारी मशीन दिख रही है एक चित्र बीचों बीच दीवार पर हंक लिखा हुआ है साईड मे एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो की जिम कर रहा है।

मैदान में बहोत ज्यादे हरे-हरे पेड़-पौधे दिख रहे है कुछ पिल्लेर्स अन इलेक्ट्रिसिटी के भी नजर आ रहे हैं।

चित्र में एक आयुर्वेदिक दवा दुकान नजर आ रही है जिसमें बीचों-बीच एक स्टूल और चेयर भी दिख रही है कुछ साइड में कारा लगी हुई हैं जो की सफेद रंग की है।

केंदाली की दीवारॆ पीले रंग से रंगी हुई है एक बोर्ड भी मौजूद है इसके पिलर्स लाल रंग के मौजूद है कुछ पिलर्स पे लाईटें भी लगी हुई हैं।